यहां सामने ही सचिन निवास की दुकान है वहां पर सूट टंगे हैं।

ओर यहां पे सफाई देखने को मिल रही है।

बहोत सारे पेड़ लग रहे हैं और जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

टेबल लगी हुई है टेबल पर स्टडी कर सकते हैं ऐसी सुविधा उपलब्ध--

डिब्बे रखे हुए हैं और एक तरफ गाय की मूर्ति रखी हुई है उसमें दान देते हैं और एक फर्नीचर लगा हुआ हैं नीचे सफाई है।

की सुविधा है और एक सामने ही कार खड़ी हुई है यहां पर सफाई भी देखने को मिल रही है और साइड मे पेड़ भी है मौसम साफ है।

कुछ देखने को मिल रहा है साइड में फूलों से यो पत्तियों से डेकोरेशन कर रखी है कुछ लाइट भी लगी हुई है और कुछ तो गमले भी लगे हुए हैं।

और ब्लैक चेयर है जिसके कारण से चेयर बहोत ही सुंदर लग रही है। खाने की सुविधा है।

कलर भी कर रखा है और एक स्विच लगा हुआ है वो सामने कुछ कपड़े टंग एक कपड़ा टंग रहा है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं।

सामने ही डॉक्टर ए_पी_जे अब्दुल कलाम की लाइब्रेरी है और सीढ़ीओ पे जाकर लाइब्रेरी है।

और बच्चे अपने एंजॉय कर रहे हैं।

किसी का अलग अलग रंग है एक आदमी राखियां बेच रहा है और मौसम साफ है सड़क गीली हो रही है।

टूटी हुई बिल्डिंग के आस पास एक आदमी कैमरा लेके ये किसकी वीडियो बना रहा है यहां पर गंदगी हो रही है।